क्लीनिक दिखाई दे रहा है यहां पर दांतो से संबंधित बहोत सारे इक्विमेट --

इसमें बहोत सारी वाशिंग मशीन फ्रिज टी_वी एल_इ_डी दिखाई दे रहे हैं।

जो कुछ बाहर है और कुछ पैक बॉक्सेस में है ऊपर लाइटिंग्स बहुत अच्छी है एक सीढ़ी दिखाई दे री है स्टेयर्स जिसको बोलते है।

गिफ्ट आइटम की शॉप है यहां पे काफी देवी देवताओं की फोटो --

और एक लड़का बनियान में वर्कआउट कर रहा है एक येलो कलर की टी शर्ट में लड़का बैठा है।

फोटो मे दिखाई दे रहा है को कोई कॉलेज है या फिर ऑफिस है यहां पे बहोत सारे टूव्हीलर्स और कार्स पार्किंग मे खड़े हैं।

छोटे रबड़ हेयर पिन वगैरा है पीछे कपल्स सेट है काफी सारे गिफ्ट आइटम है जो सजावटी आइटम होते हैं।

फोटो में एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे हिरण है जो काफी अच्छे लग रहे है।

ठहरिए मो मेहरबानी करके अपना मोबाइल ऑफ कर लें ये वार्निंग भी है एक फैन जो बंद है।

बड्डे केक बिस्कुट आदि मिलते हैं व आर्डर पर तैयार किए जाते हैं शीतल बेकरी --

एस ए बी एस_एस_सी सी_ए_जी_एल सी_पी_ओ एस_आई सब है तो सब--

हाईवे जयपुर हाईवे पर है। एच_डी मार्ट्स यहां पर सभी तरह का आपको ग्रोसरी वैरायटी कॉस्मेटिक का आइटम मिलेगा।

ये किसी पैलेस का फोटो है जो वाइट कलर और ब्राउन कलर में है।

बैठने की बहोत अच्छी व्यवस्था है यहां पे अच्छी लाइटिंग्स ऑरेंज वॉल के साथ मे खाने का लुफ्त बहोत ही अच्छा आनेवाला है।